मुझे यह एक जिम दिखाई दे रही है।

के बाहर बहुत सारी मोटरसाइकिले दिखाई दे रही है।

इसमें एक विंडो दिखाई दे रही है।

लोहे के बिजली वाले खंभे दिखाई दे रहे हैं।

एक कार दिखाई दे रही है।

और ये दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे काफी सारे गाय बंधी हुई दिख रही है।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

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

मुझे यहां पर एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

खेत में कुछ पानी पड़ा हुआ है।

बिजली की कुछ तारे दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर एक कार दिखाई दे रही है।

कांच का शीशा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक जीना दिखाई दे रहा है।

एक पेन दिखाई दे रहा है।

निचे कुछ सुखी लड़कियां पड़ी हुई हैं।

मुझे यहां पर दो छोटे छोटे दुकाने दिखाई दे रही है।